ये पार्किंग पैलेस है। यहाँ पर आप गारी बाइक कुछ भी पार्क कर सकते हैं।

इसके अंदर में बहुत सारे डंबल हैं डिप्स लगाने की व्यवस्था है टीम घीचने की व्यवस्था है और इसका फीस मात्र चार सौ रुपया महीना है।